एक बावे।

नीचे है।

ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

अ आसमान दिख रहो है।

इजत है नीचे आदमी औरतें खड़ी हैं।